और जो प्लेट है । वो ग्रीन और रेड कलर से डिजाइनर व्हाइट कलर की प्लेट है जो एक स्टूल एक टेबल पर रखी हुई है। ब्राउन --

लोग योग कर रहे है हाथ जोड़ के और एक टीचर भी बैठी हुई है। अ रेड कलर का कारपेट है ब्लू कलर का कारपेट है।

यहाँं पे कुछ टूटी हुई जलेबी दिख रही है कुछ जुड़ी हुई जलेबी दिख रही है और चाशनी भी दिख रही है।

कड़ी दिख रहे धनिया दिख रहे हैं और आलू और चुकंदर भी दिख --